यहां एक मंदिर का फोटो है जहां पर बहुत सारे पुरुष और महिलाएं--

इस फोटो में आप यहां देख सकते हैं कि--

इस फोटो में हम देख सकते है कि यह किसी--

इसके ऊपर लिखा है लाइफ्स गुड् --

में लगता है इसमें बहुत अच्छे अच्छे पीले और हरे रंग के गुब्बारे लगा रखे हैं।

कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ आदमी यहां से कहीं पर--

कुछ हरे रंग के और कुछ लाल रंग के गमले--

अल लगवा रहे हैं और--

जो उनकी सैलरी में आने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ--

इस फोटो हम देख सकते कि यह एक--

बैंक का फोटो है जिसका नाम केनरा बैंक हैं।

ठीक कर रहे हैं और ओ नाव दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।